एल्युमीनियम फोइल नजर आ रही है।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

गेट दिखाई दे रहा है।

बिजली का खम्बा दिखाई दे रहा है।

गुलाबी रंग की दीवार नजर आ रही है।

सीलिंग पर लाइट दिखाई दे रही हैं।

आसमान नजर आ रहा है।

कई सारी नई साइकिलें नजर आ रही हैं।

बड़े पेड़ दिख रहें हैं।

घास दिखाई दे रही हैं। कुछ पौधे नज़र आ रहे हैं।

कुछ खिड़कियाँ दिखाई दे रहीं हैं। दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

आसमान नज़र आ रहा है।

बड़ा गेट नजर आ रहा है।

सरोवर भी लिखा हुआ नजर आ रहा है।